सामने एक पुल है उसके नीचे से पानी बहता दिख रहा है पास मे लाइटिंग पोल दिख रहे है एंड --

सामने खुला आसमान है धुप निकली हुई है ।

ये स्टेज बने हुए है इसमें कुछ फूल गमले रखें गए माइक रखें हुए है ।

सामने एक पुल है पुल के ठीक नीचे पेड़ दिख रहे है और इन दोनों के बीच सूर्य एक चन्द्रमाँ की दलाली की तरह दिख रहा है।